बोर्ड लग रहा है चुकी नी लाल रंग का है जिसपे गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है लाल पीले रंग से कुछ लिखा हुआ है नीचे दुकान दिखाई दे रही है समाने लटकी हुई है एक आदमी खड़ा हे जो कुछ सामने जो है ओ पॉलिथीन मे पेक करके रखा है कार्टस मे कुछ सामान रखा है।